ये एक कोबिज का खेत हैं।

बस ट्रक यहां से रेडी हो के अभी--

एंड क्लाउड भी दिख रहे हैं।

एंड दो क्लाइंट बैंक के अंदर--

फोटो बहोत अच्छे लग रहे हैं भी अच्छे है।

तावा रोटी शाम में जो रखे हुए है ओ भी ऐसे हैं इसलिए यहां से--